छोटा सा जनरल स्टोर दिख रहा है जिसमे बहुत सारे सामान नजर आ रहे है।

और उसके पीछे एक बोहोत खूबसूरत इमारत भी नजर आ रही है। जो कोई प्राचीन इमारत हो जैसे--

ये एक मॉल का नज़ारा है।

यह एक सुंदर मिठाई शॉप नजर आ रही है।

ये एक खूबसूरत फूल है नजर आ रहा है जो लाल ओर सफेद रंगों से बना हुआ है काफी अछा सुंदर सा खिला हुआ भी है।

ई फूलों की दुकान है गुलदस्तों की दुकान है जहा से लोग किसी शादी समारोह मे देने के लिए गुलदस्ते फूल वैगेरे लेते है।

एक सुंदर सा होटल सा नजर आ रहा है जहाँ पर कुछ लोग भी नजर आ रहे है।